का बैस वाइट कलर का और रेड और ब्लैक कलर की लिखावट है। निचे आसमान का कलर ब्लैक नज़र आ रहा है। यहाँ बाजु में दो दुकान --

ओ धड़ी है व्हाइट कलर की और उसके सामने दुकान हैं जो बंद हैं जिसका शटर डाउन है हाफ हाफ ब्लू है।

ये एक बेकरी शॉप है यहाँ पे पर डेजर्ट वगैरह केक पेस्ट्री कॉफी स्नैक्स वगैरह मिलते हैं।

व्हाइट कलर की नीचे फ्लोर पे और सीढ़ियों पे ग्रीन कलर का शेड आ रहा है और बाकि यहाँ एक ट्रक भी खड़ा है।

आ येलो है व्हाइट है एण्ड यहां पे जो यहां केबिन बना हुआ उसमें फ्लेक्स लगे हुई हैं व्हाइट एंड रेड कलर के।

ये एक नदी है और नदी के पास ऊपर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों पे पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहाँ पे दो बच्चे है दो-तीन बच्चे तैर रहे है। वहाँ पे वो अंकल व्हाइट बनियान में खड़े हुए है। यहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई है।

और एक ठेला भी लगा हुआ है | यहाँ पे गाड़ी भी जा रही है बाइक पे बैठकर आदमी चला रहा है ।

एक रोड गया हुआ है आजू बाजू पेड़ लगे हुए है बहुत बड़े बड़े और यहाँ पर भी कच्चा रोड है इस साइड --

तलवार ली हुई हैं घोड़े के ऊपर अअ चबूतरा टाइप में जीने से चढ़ते हैं।